आदमी काम कर रहा है एक आदमी खरा सामान ले रहा है ब्लैक कलर का टी_शर्ट पहना है पैंट पहना है।

और एक आदमी खाना खा रहा है टेबल पे तीबारा लिखा है।

कुर्सी है एक आदमी है जो टेबल पे कुछ लिख रहा है गेट फिर गेट भी पेंट हुआ है।

ग्राउंड है ग्राउंड में बहुत आदमी खेल रहे है।

यह एक डाली सा लगा है उसके अंदर गाछी ब्रिज है और वहां पे एक घर लउक रहा है और उसके साइड में जाली भी लगा है।

ये एक है टाइप की है वहां पे बगल में पेड़ पौधा बहुत है।

बहुत सारा टेब टेबल है दो कुर्सीया है एक टेबल पे सामान से--

है एक क्रेट है हरा है एक कुर्सी है जो रेड कलर का उसके--

आगे पीला कलर का शर्ट पहना है व्हाइट कलर का--

चार चक्का ऑफिस पेंट हुआ है।

इस का बाल पूरा पक गया है चश्मा पहना हुआ है घड़ी है हाथ में--

है उसके पीछे बहोत सारा पहा वहां पे घर भी है --

नीला कलर का उसका बगल में एक आदमी है हरा पेड़ पौधा भी है घर है।